बराबर में दो पानी की बोतलें रखी हुई हैं और बराबर में एक टिश्यू पेपर का बॉक्स रखा हुआ है।

ऊपर कुछ मैगी के पैकेट्स रखे हुए हैं।

पीछे सड़क पर कुछ ऑटो दिखाई दे रही है।

बराबर में एक फिसलन पट्टी है जो रेड कलर की।

सामने एक व्यक्ति खड़ा हुआ है जिसने रेड कलर की टी-शर्ट पहनी हुई है और उसने जींस पहनी हुई --

उन्हीं के सामने कुछ व्यक्ति नीचे बैठे हुए हैं।